यह एक अत्र की शॉप है और इसमें तस भी धरी हुई है और अत्र धरा हुआ है।

और य् यहाँ पर फूल भी धरे हुए हैं सामने और यहाँ पर कार बाइक खड़ी हुई है।

यह बहोत सारे कीड़े हैं।

ये एक बच्चों की क्लास है जिसमें स्टूडेंट बैठे हुए हैं और बोर्ड पर सर पड़ा रहे हैं।

और नीचे फर्श और कुर्सी धरी हुई है बहुत सारी और बॉक्स धरे हुए हैं यहां पर।

यह एक बस है जो सवारी लेकर जाती है कहीं से कहीं टूर वगैरा पे।

यह एक फ्रोक्स फ्रो की गाड़ी है और इसमें लाइट जल रही है।

साइड का इंडिकेटर जल रहा है और इसमें चार टायर है।

और सामने गली सी जा रही है और शामने आस पास इसके घास है और खंबा खड़ा है।

और यहां पर दो लड़के बैठे हैं और तीन बाइक खड़ी हुई है।

यह असली फूल नहीं है नकली फूल हैं।

और इसमें बच्चो को झूलाया जाता है इसके आस पास पेड़ है।

और यह इसके बीच में छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

और एक वायर जा रही ये और ये छोटा सा गेट है इसका।

और एक लड़का खड़ा है ये। इसके कानों इसके गले में ब्लुटूथ गडी हुई है और दोआल है इसपे।

यह एक किसी का फार्म हाउस है और यहां पर बहुत साइड में जंगल है और एक गाड़ी खड़ी हुई है।

यहां यहां इसके पीछे बहुत सारा पानी और नीचे घास सा हो रहा है।

और यहां पर दवाई धरी हुई है।

इस बच्चों ने पीली टी शर्ट पहनने की और बराबर में इसके पेड़ है।

और वैसे डिब्बा धरा हुआ है और यहां पर सारी मेजे है और नीचे--

और आदमी उठा उठा कर गिन रहे हैं प्याज के कट्टे रेड कलर के प्याज के कट्टे और रेड है प्याज।

यहां पर एक गेट है और लकड़ी का कुछ बना हुआ है।